ए.टी.एम. पैसा निकालने वाला है। उधर में अच्छा गेट लगा हुआ है। उधर में एक माइक लगा हुआ है। लाइट लगा हुआ है। कैमरा है।

दुगो बरका ब्रीज है पानी है आसमान देखे में बहुत अच्छा लगा है पेड़ है।